बहुत ही स्मार्ट लड़का आगे में खड़ा है इसके ऊपर ये घड़ी बहुत अच्छा लग रहा है पीछे में एक स्टार बना हुआ है आगे में पत्थर का डिज़ाइन का बना हुआ है।

ये जिला गोपालगंज हमारा जिला अपना जिला सबका जिला।

यहाँ पे आते है सब कोई घूमने के लिए खास कर के कपल लोग बहुत अच्छा यहाँ पे प्राइवेसी बहुत मिलता है यहाँ पे।

ठीक है देख सकते हो ऊपर में तीन रंग का बैलून है बहुत सारे आदमी भी आए हुए है यहाँ पे बहुत अच्छा जिम है सस्ता जिम है गोपालगंज का बेस्ट जिम है।

अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है यहाँ पे भक्त जनों का जमावाड़ा है। यहाँ पे सभी आयी है पूजा करने के लिए दुर्गा माता हमें भी शक्ति दे।

माल कौन ट्रेन है इसको क्या बोलता है इसका नाम ट्रेन है और ब्रिज है यहाँ पे।